यहां पे आपको राशन हर किस्म का राशन मिल जायेगा चेयर भी रखी हुई है बहुत सारा सामान रखा हुआ है इधर राशन का आपको जो भी चाहिए इधर राशन टैप भी रखा हुआ है।

ये एक बहुत अच्छा व्यू है यहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है इधर बहुत सारे ईंटों से पत्थर बना हुआ है मतलब पत्थर से बहुत बड़ी-बड़ी दिवारी बनी हुई है आस पास पत्थर भी है।

यहां पे पेंटिंग का काम हो रहा है दो लोग खड़े हुए है एक अंकल खड़े हुए है जिनकी शर्ट --

ये एक सैलून हैं जिसका नाम हैं फ्रेंड्स ब्यूटी ब्लूम । यहाँ पर एक---

थाई बना रहे हैं साइड में एक दो लड़के और जिम कर रहे हैं जिम के अंदर ऐ.सी भी लगा हुआ है और चार बल्ब लगे हुए हैं फॉक्स लगे हुए--

वन टू थ्री फॉर फाइव और सिक्स यहाँ पे डिजाइन बने हुए हैं रेड शेड हैं उनका और पीछे से पेड़ भी नजर आ रहा है और साइड में भी एक पेड़ लगा हुआ है जिसका कलर हरा कलर का हैं ग्रीन कलर का हैं ये पेड़ है।

एक अन्टी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई हैं एक अन्टी एक बच्चा भी बैठा हुआ है जो ऑरेंज कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहना हुआ है एक चेयर भी रखी हुई है हरी कलर की इधर बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है --

ये एक रेस्टोरेंट का फोटू है यहाँ पर बहुत सारी चेयरस लगी हुई है यहाँ पे कुछ काम चल रहा है यहाँ पर छे लोग है जो तीन लोग खड़े हुए हैं एक अंकल स्टेज पर खड़े हुए हैं।

और नीचे ब्लू कलर की शीट बिछी हुई है और साइड में पिलर लगा हुआ है और एक पंखा लगा हुआ है और बहोत सारी चीजें नजर आ रही है।